क्योंकि बच्चों को पी पीटी से अअअये फुर्ती मिलती जो कि बच्चों के अअये सभी को हशट पुष्ट की --

बुक्स इरेजरेस पेन बॉक्स किताब कुछ भी ले सकते हैं। हर प्रकार की चीज मिलती है इनपे जोकि कोचिंग वाले स्कूल वाले बच्चे खरीदते हैं जोकि पढ़ने के लिए जानकारी लेने के लिए उम्म --

एनजीजी काफी पुरानी रोडवेस दिखाई दे रही है। जो कि लोकल रोडवेस है। यानि कि प्राइवेट बस है। जो कि हमें --

और चूंकि ये पुल भी है जो गाड़ियों पुल बनाया गया है जो कि बड़ी मजबूती से बनाया है जो कि --

ये देखिए फ़ोटो लगी हुई है। पिक्चर का हॉल है जिसमें पिक्चर दिखाई दे रहा है।